बहुत बड़ा रोड है। रोड से एक महिला गुजर रही है जो दो भैंस लेके जा रही है और एक लड़का भी गुजर रहा है साइकिल ले के और बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है। यह नजारा बहुत अच्छे लग रहें हैं।

ये तीन आदमी दिख रहा है लगता है योग कर कर रहा है और दो बच्चा और एक महिला है और घर येलो कलर से रंगा हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है।